वहीं पर कुछ मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं।

सामने ऑटो दिखाई दे रहे है।

कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है उस दुकान में--

उस दुकान में रस्सी के गढ्ढे दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर में तीन दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक मेडिकल दिखाई दे रहा है।

टीचर के पीछे एक घड़ी दिखाई दे रह--

जिम में बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

फोटो में पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

पीले कलर के पर्दे दिखाई--

इस फोटो में एक गैरेज दिखाई दे रहा हैं उस--

बारहसिंघा दिखाई दे रहे हैं।